इस तस्वीर में मुझे एक काली भैंस दिख रही है जो यहां पर घास चरते हुए दिख रही है इस भैंस को यहाँ बांधा गया है घास खाने के लिए।

यहाँ पर मुझे दो लोग दिखाई दे रहें हैं एक जेंट्स और एक लेडिस जो और रिसेप्शन पार्टी में आए हुए हैं और यहाँ पर ये अपनी तस्वीर खिंचवा रहें हैं।

इस तस्वीर में मुझे खुब सारे पेड़ पौधे दिख रहे हैं जंगल इलाका दिख रहा है।

इस तस्वीर में मुझे एक कार्यालय दिखाई दे रहा है और इस कार्यालय के बाहर एक ब्लैक कलर का एक मैन गेट है।

इस तस्वीर में मुझे प्रतीक्षालय दिख रहा है जहां पर खूब सारे लोहे की चेयर रखी हुई हैं जहां यात्री बैठ के गाड़ी बस की प्रतीक्षा करते हैं।